बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं कुछ लोग बैठे हैं कुछ लोग खड़े हैं बहुत सारे पेड़ और बहुत सारे लाइटिंग भी दिखाई दे रही है।

यह एक विद्यालय की तस्वीर है जो की बहुत बड़ी बिल्डिंग है और वो सामने बहुत बड़ा--

बहुत सेर पड़े देख रहे है और बड़ा सा गेट है।

सामने बहुत सारे पेड़ भी लगे हुए हैं।